ये एक बिल्डिंग है उसके बगल मे बहुत सारे घर है इसके पीछे खुला आसमान है और बहुत सारे--

ये एक मैदान है और इसमे बहुत सारे--

ये एक होटल डाइनिंग टेबल है और इसके ऊपर एक प्लेट है प्लेट के ऊपर बिरयानी रखा हुआ है शायद चिकन बिरयानी एक मग और एक पानी का गिलास।

और एक बिरयानी का हाड़ीया और एक चटनी का गिलास और एक--

नीचे का कलर भी ब्लैक एण्ड व्हाइट है।

और इसके लोगों के हाथ मे बहुत सारे फल सोफ़ और डाला।

बस एक ही कलर के है सेम डिजाइन और --